ये बरामदा ऑफिस जैसा लग रहा है।

दो चेयर भी रखा हुआ है।

बगल में एक व्यक्ति भी खड़ा करके है।

ये फोटो में बहुत सारा सोलर प्लेट लगा के भी रखा है।

एक साइन बोर्ड भी लगाके है।

शायद दुकान देख रहा है।

बहुत सारा टायर ढेर रखा है।

एक सोने वाला रूम दिखाई दे रहा है।

एक ट्रक है पीछे में।

बाइक भी रखा हुआ है।

ये रास्ता का किनार में--

घर का आगे में भी--